और ये बिल्डिंग कोई हॉस्पिटल पे घर और क्या-क्या है।

इस पोस्टर में एक बड़ा समुद्र दिखाया गया है।

दौड़ने वाला हैं बेट लिफ्ट है और --

आईना भी हैं और कोई अदामी भी दिखाई नही दे रहा है जिम क्लास बहुत मस्त है।

जिस पोस्‍टर में ए शोरूम है।

अनेक तरह के पर्दा इसमें सबसे मस्त क्वालिटी वाला पर्दा मिलेगा जो भी पर्दा चाहिए सब क्वालिटी का एक दुकान में कोइ अदमी भी नहीं है और सब आदमी --